यहां पे बहुत सारे इंसानों पे चलके है दो ठो औरत के शोल्डर मे--

दुकान के अंदर बहुत सारे सामान सब सभी रखे हैं।

जो कि ब्लू कलर के कपड़ा और पिंक कलर के कपड़ा से लगाया हुआ है।

सामने में बैठने के लिए काला कलर के चेयर भी रखे हैं।

सामने में बहुत सारे इंसान लोग खड़े और बैठ के हैं ऊपर में एक फैन भी लगाके है।

सामने में बहुत सारा इंसान लोग भी खड़ा होके है।

ऊपर में बड़ा सा ए_सी भी लगाया हुआ है।

के सामने एक फैन भी लगाया हुआ है।

ये तस्वीर मुझे बड़ा सा रूम दिख रही है।

गाड़ी के सामने इंसानों के खड़ा होके हैं।

ये रूम में बहोत सारा खिड़कियां भी लगाया हुआ है।

गाड़ी के पीछे में बड़ा बड़ा पेड़ सब भी लगाया हुआ है।

ये सब भी लगाया हुआ है।

ये तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है।

ऊपर में लाइफ में जल के है और साइड में बहुत सारा कपड़ा भी टंगया हुआ है।

नीचे में छोटा छोटा ग्रास सब भी उग के है। पीछे में बड़ा बड़ा पहाड़ सब भी दिख रहे है।

पीछे में बड़ा बड़ा पेड़ सभी दिख रहे है।

ये तस्वीर में मुझे बहुत सारा बिल्डिंग दिख रहे है बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़कियां भी लगा के दिख रही है।

काले प्लेट के ऊपर में दो ठो कप और दो ठो स्पून भी रखे हैं। कप के अंदर चाय भी रखे हैं।

सामने में बहुत सारे इंसान भी बैठ के हैं। औरत लोग के गले में बहुत सारा माला सब भी पहन के हैं।

समुंदर के साइड में बहौत सारा ग्रास भी उगे हैं।

पीछे में बड़ा बड़ा पेड़ सब भी लगा के हैं।